यह एक मॉल है जो कि कपड़ों का है। हम अक्सर अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए मॉल में जाते हैं और मॉल में हमें अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं। जिनको हम खरीदते हैं और हमें मॉल में काफी डिस्काउंट भी मिल जाता है।